लोहे का है जिसके दोनों साइड दीवार है ।

वह रोड़ लिखा हुआ है और पीछे अंदर एक बिल्डिंग है जो --

जिनमें कुछ में पत्ते लगे हुए है।

और नीचे कुछ पेपर दिख रहे है साइड में एक ढूर बोर्ड दिख रहा है और एक झाड़ू दिख र--

अ अंदर कुछ आदमी दिख रहे है दोनों साइड दीवाल पर--

पीछे करले कलर का पर्दा लगा है ऊपर सफेद छत--

पोस्टर लगा हुआ है जिसमे तेजा बुक स्टॉल लिखा है और--

लगे हुए है अंदर एक महिला दिख रही हैं।

बहार एक आदमी खड़ा हुआ है और साइड में एक नीला डस्ट्बिन --

सामने एक जंगल दिख रहा हैं जिसमे बहुत सारे पेड़--

दो कार दिख रही है और कुछ आदमी दिख रहे है नीचे लाल मिट्टी हैं।

सामने एक गड्ढ दिख रहा है जिसमे लाल--

तीन कलर की टीने है और साइड में एक सफेद बोर्ड लगे है जिसमे ॐ मांग--

एक ही है अंदर बहुत सारे गमले टंगे हुए हैं।

जिनमे पौधे लगे है नीचे भी बहुत से गमले दिख रहे--

लू सफेद और ग्रीन कलर की है जिसमे बहुत सारी खिड़कियां--

सामने एक दीवाल बनी है जिसके ऊपर जाली--

भिंडी दिख रही हैं और कुछ प्याज दिखाई दे रही हैं और साइड में एक बोरी--

काला पैन्ट पहने है और हाथ में पनि--

और बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर दिख रहे है और कुछ नीचे--

सामने एक घर दिख रहा है जिसमे ऊपर कत्थाई--

आ लिखा हुआ है और अंदर एक टेबल --

गेट लगा है जिसके साइड में ए सफेद खंबा--

बना है दूर उचे पहाड़ दिख रहे है और हरे--

सामने एक घर दिख रहा है जो पिंक कलर का हैं उप्पर--

ए दो पोस्टर लगे हुए है अंदर बहुत सी तस्वी--

सामने एक घर दिख रहा है जिसमे एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमे बाबा ओमनाथ--

अजिंग सेंटर भी एस_एस लिखा हुआ हैं और साइड में कांच का--

सामने एक झरना दिख रहा है जिसमे ऊपर--

सामने सड़क दिख रही है जिसके--

क्रीम कलर की है साइड में एक सफेद बड़ी टेेंकी बनी हुई हैं ।

और एक साइड बहुत सारे पेड़ दिख रहे है और खंबे--

हम्म सामने रोएक बने हुए है जिनमे एक फेशियल किट रखी हुई हैं।

सफेद कलर का है जिसमे लाल कलर की--

कत्थाई कलर की बने है और सामने दो बेेल बने हुए हैं।

को घास की है जिसके नीचे दो कुर्सी है जो नीले--

पीले कलर की रेत दिख रही है और एक बड़ा समुद्र--

दिख रहा है जिसका कलर नीला दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान भी नीला स--

एक पार्क बना है जिसमे नीचे बहुत से हरे घास दिख रही--

सामने एक स्टेज दिख रहा है जिसमे नीचे हरी चटाई--

को नीली लाल साड़ी पहने हुए है बालों में सफेद गजरा--

सामने एक बड़ा ग्राउन्ड दिख रहा हैं।

कलर के है और सरक पर कुछ बसे साइकिल --

दुर्गा देवी मंदिर लिखा हुआ है नीचे एक दुर्गा जी की फोटो --

काला ब्लैक इन वाइट दिख रहा है और जिसमे--

सामने सड़क दिख रही है जिसका कलर --

और तीन लड़के दोड़ते हुए दिख रहे है दो पीली सफेद टी-शर्ट --

और पीछे ग्राउन्ड हैं जिसमे नीचे बहुत सारी घास दिख रही हैं।

और दूर बहुत से पेड़े दिख रहे हैं उ--

जिनकी बीच में कुछ पेढ़े दिखाई दे रहें हैं ऊपर एक आदमी--

सफेद कलर है और शटर कत्थाई कलर की हैं जिस पर ऊपर--

इसमे काँच वाली टेबल है काँच के अंदर कुछ मोबाईल --

दिख रहे है और ऊपर एक लैपटॉप रखा हैं ।

सफेद कलर की पट्टी है और एक पंखा लगा--

सामने एक घर दिख रहा हैं।

एक पिंकू लिखा हुआ है और नीचे भी एक पोस्टर रखा--

सफेद कलर है ऊपर एक घंटी लगी हुई हैं।

बाहर सब पीले कलर की का मंदिर हैं।

पेड़ बने हुए है बाहर एक सफेद फूल का पे--

सामने बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं।

आमने दो आदमी खड़े हुए है एक लाल टीशर्ट पहन--

पहने हुए है और एक बनियान चड्डी प--